बहुत ही दूर में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे वहां आई लव डिक्रोंग करके लिख के दिखाई दे रहा है।

मुझे एक पुल्ला दिखा दे रहे हैं।

कलर है ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे है।

यह एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है और ग्राउंड में बहोत ही सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे एक फ्लावर्स का पेड़ दिखाई दे रहा है येलो कलर में और मुझे यहां एक बिजली का तार दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहाँ आसमान दिखाई दे रहे हैं थोरा ब्लैक कलर में--

यहा ग्राउंड कलर ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है और थोड़ा ग्रीन में भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक लड़की दिखाई दे रहे है ब्लैक और रेड साड़ी में।

यहां मुझे एक फैन दिखाई दे रहा है। फैन का कलर यहां वाइट में दिखाई दे रहा है।

यह मुझे एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क में पेड़ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में।

यहा मुझे बड़ा ही पेड़ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में।

घर का कलर्स में येलो कलर में दिखाई दे रहा है व्हाइट पिलर के साथ दिखाई दे रहा है।

मुझे पीछे में स्कूटी दिखाई दे रहा है।

यहां रोड दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में और सीमेंट दिखाई दे रहा है यहां में।

ये यहां फ्लोर में टाइल्स डाल के दिखाई दे रहा है टाइल्स का कलर है येलो और व्हाइट दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बहुत ही बड़ा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है और यहां में बहुत ही इंसान और दिखाई दे रहे है मुझे।

बहुत ही सारा बॉतल दिखाई दे रहा है व्हाइट और ब्लू ग्रीन कलर में।

अ मुझे ए दिखाई दे रहा है दरवाजा का कलर या में मिट्टी कलर दिखाई दे रहा है और दूसरा परडा दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।